ये ए-- और किसी दुकान है जिसका पर बहोत सारा समान रखे हुए है एक ने नीली कलर की शर्ट और नीले कलर की पैंट पहनी

यहाँ एक औरत दिखाई दे रही है उसने हाथों मे लाल कलर की मेहंदी जैसे दिख रही है और पेड़ों में भी लाल कलर की मेहंदी जैसी दिख रही हैं।

उसने हरी कलर और लाल कलर की साड़ी पहनी हुई है हरी कलर चूड़ी पहन रखी है और लाल कलर की और पीला कलर का चन्दन लगा रखा है और दो बस दिख रहे है जो हरे कलर के--

गुलाबी कलर के दिख रहे हैं ऊपर चद्दर भी सफेद कलर की दिखाई दे रही है पेड़ जो थोड़े हल्के से हरे और बाकी काले कलर के नज़र आ रहे है दुकान है जो की काली कलर की और--

यह और तीन लेडीजो ने साड़ी पहन रखी है एक ने पर्स टांगा रखा है और पीछे फूल दिख रहे है जो नीले गुलाबी कलर के दिखाई दे रहे है।